यहाँ पर एक सामने ही बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की ऑरेंज कलर की है और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा --

--जंगल में कुछ झाड़ी वाले पेड़ भी दिखाई दे रही है और कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

सामने ही कुछ मालाये भी रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पैकेट्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं

यहाँ पर एक अजगर की--